यहाँ पर से एक कुर्सी रखी हुई है ब्लॅक कलर की जिसमे लड़का बैटा हुआ है उसने नीले कलर कि टीशर्ट पहनी हुई है।

यहा पर सामने मे एक घर दिखाई दे रहा है जिसमे बडासा गेट लगा हुआ है अंदर मे एक लाइट लगी हुई है अंदर मे इंसान दिखाई दे रहा है बाहर मे टेन्ट लगा हुआ है।

यहाँ सामने मे एक घर दिखाई दे रहा है एक बाल्टी रखी हुई है यहाँ पर एक जेन्ट्स खड़ा हुआ है जो कि टूपनि उठाये हुए हैं। उसमे कु--